इस पिक्चर में एक होटल है जो चार फ्लोर तक है।

जमीन मे ही एक ब्राउन कलर का ब्रश नीचे में है रखा है।

इस पिक्चर में मेला दिखाया गया है और बहोत सारे लोग भी हैं।

इस पिक्चर में एक बगीचा है और बगीचे में बहुत तरह के फूल है और वह फूल रेड येलो ऑरेंज पर्पल और कई तरह के फूल--

इस पिक्चर में जंगल हैं जहां दो ब्रिज है जो लाठी और रस्सी से बना हुआ है।

सामने वाला दुकान के ऊपर में ही वाटर टैंक रखा है।

एक के सामने ही कुछ चीजें बनाया गया है प्लास्टिक से और वहां तीन चीज जो प्लास्टिक से बनाया गया है वह नहाने के लिए या कोई अलग चीजों के लिए बनाया गया है।

वहां रूफ तीन सोलर पे लगाया हो गया है।

जिन गेट के बाहर साइड में ही दो स्कूटी पार्क किया है।

इस पिक्चर में एक दुकान है जिसका नाम अभिमन्यु इलेक्ट्रिकल इन हर्ड वेयर स्टोर है।

धूप का वजह से ही और राइट साइड में ही ब्रिज रेलिंग का शैडो दिखाई दे रहा है।

वॉल में लिखा है से नो टू ड्रग्स एस टू लाइफ और अलग वाला वॉल में लिखा है एडिक्शन इज ए फैमिली डिसीस वन पर्सन मे बट द व्होल फैमिली सफर ।

आदमी का पेट का सामने ये एक रोड बना हुआ है।